जहाँ पे कलेक्ट इंग्लिश स्कूल लिखा है।

और यहाँ पे पेड़ सब एक लाइन से लगे हैं जैसे कॉलेज या स्कूल --

लड़कियों का एक तरह से वो एक पार्ट हो जाता है लाइफ का डांस डान्स करना बहोत लोग तो डान्स से ही अपना करियर भी बनाते हैं।

और रमजान के महीनों में तो इनकी बहुत ही --

रिच फॅमिली में ही होता है ये भी कोई रिच आदमी ही किया होगा ।

यहाँ पे भी गाड़ियां लगी हुई है शायद जे.सी.बी. है पत नहीं जे.सी.बी. नही है कुछ और है |

ताकि इहो आगे लाइफ में कुछ कर सके।

बिस्किट भी है यहाँ पे और ठंडी का मौसम लग रहा है यहाँ पे।

लाइट है सारी पढ़ाई की चीज रखी हुई है यहाँ पे।

नहीं नहीं ये एक पूजा का कोई फंक्शन अटैंड --